लोहे के ऊपर चक्के रखे हुए हैं।

उनके हाथों में एक किताबे है और पीछे एक हेड खड़ा हुआ --

ऊपर बादल पीले रंग के आए हैं।

सामने एक मैदान भी है जिसमें हरा भरा घास है।

यहा पे दो नारियल का पेड़ है।

घर में ढ़ेर सारी लाइटें जल रही हैं।

घर का इंटीरियर बहोत अच्छा से किया गया है।

सामने बहोत सारे पहाड़ हैं।

एक एस_बी_आई का बोर्ड भी लगा हुआ है।

साइड में एक शीशे का स्क्रीन भी दिया गया जिससे इससे उस तरफ देखा जा सके।

और एक पंखा भी लगा हुआ है सामने बहोत सारी लाइट टंगी हुई है।

और बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है।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

दुकान के आगे एक कूड़ा दान भी रखा हुआ है।

सामने से एक रोड भी जा रहा है।

उसके सामने एक हरा कलर का कपरा भी लगा हुआ है।

ग्राउंड में एक पेड़ भी खरा है।

सामने दीवार पे भगवान का मूर्तियां भी रखी हुई है।

चारों तरफ पर्दे और दीवाल लगे हुए हैं।